चित्र में मुझे खड़े दो लड़के दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे दो लड़के डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में मुझे बस दिखाई दे रही है।

चित्र में मुझे बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे एक शॉप खुली दिख रही है।

चित्र में मुझे गमछा बांधे हुएं लड़का कुछ ले जाता हुआ दिख रहा हैं।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

एक गाड़ी का हैंडल दिख रहा है।

चित्र में मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में मुझे कई सारी चश्मा दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में मुझे कई बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा हैं।

बेड दिख रहा है चित्र में मुझे पिलो दिखाई दे रहा है और कुर्सी दिख रही है।

चित्र में मुझे सीलिंग पर लगी लाइटे दिख रही है।

चित्र में मुझे लाइटिंग दिखाई दे रही है।

चित्र में मुझे कई सारी इसकुटी दिख रही है।

चित्र में कुछ मुझे जमीन की मिट्टी दिखाई दे रही है।